इस पिक्चर में मुझे कच्चा घर नजर आ रहा है।

लकड़ी की सीढ़ी नजर आ रहा है।

मशीन के सामने फ्लावर्स भी नजर आ रहा है।

ग्रीन ग्रास में नजर आ रहा है।

टाइल वाला फ्लोर नजर आ रहा है।

मुझे इस पिक्चर में कपड़ा स्टोर नजर आ रहा है।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

और इंसान लोग भी नजर आ रहा है।

भी नजर आ रहा है।

क्लाउड भी नजर आ रहा है।

पिक्चर में मुझे फ्रूट्स स्टोर नजर आ रहा है।

लाइटिंग भी नजर आ रही है।

इस पिक्चर में मुझे सोना नजर आ रहा है।

डिसप्लेस ऑफ ऑल ग्लास काउंटर में नजर आ रहा है।

इंसान भी नजर आ रहा है।